ये एक बाइक का शोरूम हैं और इसमें बहोत सारी बाइकें है और यहां पर दो लड़के कु--

जिसमें बोहोत सारा बालों का सामान रखा हुआ हैं यहां पर एक शैंपू भी हैं।